और इसके आसपास कुछ पेड़ भी लगे हैं और नीचे हरी हरी घास भी लगी है।

यहां पे नीचे कुछ बजरी की तरह पड़ी हुई है।

जिस पे एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

और गेट पे कुछ बैनर से लगे हुए हैं।

और इसमें कुछ सोफे पड़े हुए हैं।

और एक मेज़ भी रखी है।

और इसमें खिड़की है और उनमें कुछ लाइट लगी हुई है।

यह एक रोड है और इसपे कुछ कार खड़ी हुई है और दो कार जा रही है।

और एक मकान भी है।

और उसके पास में एक आदमी खड़ा है।

और सामने एक फिटिंग की तरह बनी हुई है जिसमें कुछ सामान रखा है।

यहां पे दो गेट लगे हुए हैं।

यह एक रेडीमेड शोरूम है।

यहां पर कुछ तस्वीरें रखी हुई है।